और एक सजी हुई गली नजर आ रही है ऐसा लगता है कि यहां पर कोई फेस्टिवल --

ये हरी सब्जी की दुकान है यहां से हरी सब्जी खरीदी जाती है एक आदमी है जो की हरी सब्जियां बेचता है आप चाहो तो यहां से आपके लिए --

और यहां राइट्स का मजा ले सकते हो और हमें आकर आप काफी अच्छा फीडबैक दोगे।

ये बजरंगबली का मंदिर है इसमें एक--

कार की पूजा उजा सभी चीजें हो चुकी है कार जाने के लिए तैयार है।

ये तो गर्ल्स का कबड्डी मैच नजर आ रहा है कुछ बच्चे बैठकर देख रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

ये एक पार्क की फोटो है और पार्क पर पत्थरों के द्वारा डिजाइन किया गया एक बढ़िया सा रास्ता बनाया गया है।

इसमें शेर नजर आ रहा है शेर काफी सुंदर और पिंजरे में बंद नजर आ रहा है शेर की चार टांगे होती है शेर के दो आंख होते हैं।

इसमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं और ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं ये कुछ एक फेस्टिवल नजर आ रहां हैं ये यहां का नहीं है कहीं और का हैं।

आर्ट बना रही हैं एक मैडम जो इनकी निगरानी रख रही है काफी अच्छी फोटो है स्कूल की फोटो है।

ऑफ व्हाइट बिल्डिंग की फोटो है पार्किंग लिखा हुआ है एक सफेद कार नजर आ रही है और रोड नजर आ रही है काफी सारी गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं।